यहाँ एक सड़क है। सड़क के किनारे दुकाने लगी हुई हैं। जो मछली की है वहां बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई हैं और वहीं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

बोर्ड का रंग नीला लाल और सफ़ेद है।

सड़क है सड़क के किनारे एक बड़ी सी इमारत बनी हुई है। सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनका रंग काला लाल है। --

यहाँ एक बहुत बड़ी दुकान है जिसमें लकड़ी की अलमारी है जिसका रंग सफेद है | लकड़ी की अलमारियों में बोहोत सारी किताबें रखी हुई हैं वही एक आदमी बैठा है जिसने नीले और --